यह तस्वीर ने हमे एक कमरे के अंदर का दृश्य --

इस तस्वीर में हमें एक दुकान की अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है ।